यहाँ पे ट्रांसलेशन वगेरा कोरोना वगेरा भी सब बुक हैं देख सकते हैं कि इसका बचाव किससे होगा और किसने खोज किया था।

हेलो गाइस देख सकते है ये खेत बेहद काफी जबरजस्त दिखाई दे रहा है और काफी हरा-भरा है और उसमे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है और चारों साइड में बहुत ही कुछ है देख सकते यहाँ का भी लुक आपलोग को जबरजस्त दिखाई दे रहा होगा।

और यहाँ पे बहोत ही बड़ा-बड़ा खंभा हैं यहाँ पे फॉर्च्यूनर गाड़ी खड़ा हैं देख सकते हैं यहाँ का भी लुक काफी जबरदस्त दिखाई दे रहा होगा और काफ़ी मस्त--

और यहाँ पे रॉड वगेरा बहुत ही लंबा-लंबा दे रहे है देख सकते है और ब्रिज टाइप बने और बहुत ही अभी बड़ा हैं।